आप को इस तस्वीर मे तीन लड़कियाँ नृत्य करते हुए दिख रही होंगी इन लड्कीयों के ठीक पीछे एक काला रंग का परदा भी डाला गया है।

आपको इस तस्वीर में कई सारे लोग पकाते हुए दिख रहे होंगे बहुत सारे महिलाएं कुछ तैयारी कर रहे है जो कुछ पका रहि--

आपको इस चित्र मे कई सारे लड़के व्यायाम करते हुए नजर आ रहे होंगे।

आप को इस चित्र में एक फंक्शन हॉल में बैठा हुआ ये लड़का--

आपको इस चित्रमें कई सारे बच्चे एक पार्क मैं बैठकर चित्रकला स्पर्धा करते हुए नजर आ रहे होंगे यहांपे बच्चे बहुत खूबसूरत चित्र बना रहे हैं यहांपे बहुत सारे बच्चे--

आपको इस चित्र में एक आदमी एक महिला को चाबी देते हुए नजर आ रहा होगा क्योंकि इस महिला ने इस गाड़ी को खरीदा है इस महिला ने लाल रंग की साड़ी भी पहनी है।

आपको इस चित्र में कई सारे लोग नजर आ रहे होंगे एक आदमी कुस कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे लड़कों को कुछ कह रहा है यहाँ पे फैन भी लगी हुई --

इसके आगे बहुत भीड़ है बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हुए है।

पीछे बैठे हुई है और एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है ये व्यक्ति उन महिलाओ को कुछ बता भी रहा है।

हुए नज़र आ रहे होंगे इन मजदूर ओने मास्क भी पहना हुआ है।

आपको इस चित्र मे ए तीन महिला और एक व्यक्ति तस्वीर खींचते हुए नजर आ रहे होंगे।